बैग लेकर खड़ा है एक औरत दिख रही है। लाइट आसमान--

यह एक खेत दिखाई दे रहे है खेतों मे ढेर सारी फसल लगी हुई है और घास भी लगी हुई घर दिख रही है और बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और आसमान दिखाई रहा है।